मुझे इस फोटो में एक बोर्ड दिखाई दे रहा--

मुझे इस फोटो में बहुत सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में जलेबी दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में कड़ाही दिखाई--

खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में लाल रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है।

एक तलवा दिखाई दे रहा है।